जिसके सामने एक ब्लैक कलर का बैनर लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

और नीचे आम रास्ता नहीं है लिखा हुआ दिख रहा है।

जिसमें एक डाइनिंग टेबल और आसपास चेयर्स रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

टेबल के ऊपर प्लेटें और टिशू और स्पून रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

जिसमें बहुत सारी एक्सरसाइज की मशीनें रखी हुई हैं।

जिसमें गोल्डेन और वाइट कलर के पर्दों से सजावट की गई है।

जिसमें ब्लू कलर से टॉपर्स और रेड कलर से इंस्टिट्यूट लिखा हुआ है।

पराग हिंदी में और इंग्लिश में बाहर की ओर रोड बनी हुई दिखाई दे रही है।

बस का गेट थोड़ा टूटा हुआ दिखाई दे रहा है।

बैनर पर ज्ञान फ्रेश लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने की ओर एक गार्डन दिख रहा है जिसमें छोटी छोटी घास उगी हुई है।

लड़के ने ब्लू कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट को पेहन रखा है।

और बैठने के लिए बना हुआ दिखाई दे रहा है।

ऊपर की ओर चांद चमकता हुआ दिखाई दे रहा है।

उसी दीवार पर कुछ बैनर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

जो कि ब्लैक कलर की है उसका मुंह बंधा हुआ है।

यह पिक्चर एक रोड की है जिसमें बहुत सारी ऑटो खड़ी हुई हैं।

जिसमें सामने की ओर एक फ्रिजर रखा हुआ है।

इस पिक्चर में एक ढाबा दिखाई दे रहा है जिसके बाहर बहुत से लोग खड़े हुए दिख रहे हैं।